ये एक दुकान है जिसमें के तांबे के और लकड़ियों की समान सब मिल रहे हैं डमरू मिल रहे है और कलम वैगरह रखने के वाले स्टैंड मिल रहे हैं।

ये मछली का दुकान है यहां पर बहुत सारे मछली बिक रहे हैं।